पेड़ लगा हुआ है जो की यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यह पर बहुत अच्छे से सजावट की गयी है और यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत और पवित्र जगह है और यह मंदिर काफी सुंदर भी लग रहे हैं ।

यह बहुत ही बढ़िया जगह है और यह जगह एक मोमबत्ती से बहोत ही इसकी डिजाइन भी किया गया है और यह मोमबत्ती दीये के ऊपर सजाया गया है और यहाँ काफी सारे मोमबत्तियां है जो जलाये गए हैं और इस मोमबत्ती की रोशनी यहाँ --

यहॉं पर एक यूको बैंक है और इस बैंक के ना --

यह एक बहुत ही खूबसूरत बंगला है और इस बंगले में बहुत ही महंगे-महंगे लाइटें भी लगाए गए है और यहाँ पर कुर्सियां भी बहुत खास डिजाइन का रखा गया है।

बहुत से आदमी है जो अपने सफर के लिए इधर उधर जा रहे हैं और यह लाइन की काफी तारे है जो यहाँ से खींची गई है।

यहाँ पर दवाई का दुकान है और यहाँ के कुछ कंपाउंडर लोग है जो मरीजों को दवा समझा रहे हैं बहोत ही --

पीछे से एक साइकिल वाला भी इस जगह आ रहा है और यह जगह काफी खूबसूरत और हरे भरे नजारे देख रहे हैं यहां पर एक घर भी बना जो काफी बहुत अच्छा --

गाड़ियाँ भी रखी गई है और बहुत सारे सामान भी जो एक-दूसरे पर बोर्ड भी लागाया गया है और यहाँ पर बहुत सारी लाल-लाल रंग की कुर्सियाँ और पोस्टर भी लगाए गए हैं और एक यहाँ आदमी भी खड़ा है । यह बहुत ही खूबसूरत जगह --

इस घर के बीचों-बीच आँगन में बहुत सारे ड्रामे भी रखे गये है और साइड साइड यहाँ बहुत सारी गाड़ियां भी रखी गई है और यह जगह बहुत ही सुन्दर दिख रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत ही दिख रहा --

कर रहे है जो लोग अपने-अपने नृत्य में मगन हैं और अपने-अपने ड्रेस में है और इस नृत्य को दिखा रहे है और लोगो को मनोरंजन करा रहे है यह जगह काफी खूबसूरत --

अच्छा लगता है और यहाँ पे दो आदमी जा रहे हैं। एक एक के बैग है और एक खाली है और यह पेड़-पौधे का भी नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे

और यह जगह काफी खूबसूरत दिख रहे है और यह दुकान भी सुन्दर है इसमें लाइट भी लगाए गए है।